ये एक सोलर पैनल की पिक्चर है जहां के नीचे--

और लोग बाइक से आ जा रहे हैं और ऊपर आसमान भी मतलब बिल्कुल साफ लग रहा है।

ये एक पा के वीडियो है।

झूलो के सामने कुर्सियां टेबल भी रखी हैं।

जो डिजाइनिंग वगैरह काफी अच्छी है और सामने पेड़ पौधे लगे हुए हैं इवनिंग टाइम का पिक्चर है ये।

यहां पे तीन से चार लोग एक कार को--

इसपे इस पिक्चर को देखके ऐसा लग रहा है कि जैसे ये वाटर बॉडिंग की एक वीडियो है सामने पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

वॉटर टैंक भी बना हुआ है वॉटर टैंक के नीचे ढेर सारे पेड़ पौधे भी बने हुए--

और ये आदमपुर एयरपोर्ट की पिक्चर है।

एयरपोर्ट के सामने अ एडम एयरपोर्ट के सामने काफी खुला ग्राउंड बना हुआ है जो देखने में भी मतलब काफी अच्छा लग रहा है।

अह संगीत शो का वीडियो है जो देखने में मतलब काफी अच्छा लग रहा है।

मैडम अ अपनी पढ़ाई में मतलब करा रही है और पीछे की जो दीवारें है उनकी शाइनिंग बहोत अच्छी है टेबल वगैरा भी लगा हुआ है।

ये जो मंडप शायनिंग है वो बहोत अच्छी हैं।

इस फोटो को देखके ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी इंस्टीट्यूट की फोटो है।

इस पिक्चर को देख के ऐसा लग रहा है जैसे सामने--

जो देखने में पर्दे काफी अच्छे लग रहे हैं।

जहां पे लेबर अपने काम से काम कर रहे हैं और पिलर वगैरा लग रहे हैं।

आमने सामने के मतलब दो कारे जा रही हैं कार के आगे एक टावर है।

अअ रात के टाइम का ये वीडियो अ पिक्चर हैं।

इस पिक्चर को देख के ऐसा लग रहा है जैसे ये इवनिंग टाइम की पिक्चर है।